गोकुल धाम के अन्दर बनाया गया है और मन्दिर को रंग बिरंगी लरियो से सजा रखा है।

यह दृश्य एक बैंक का है।

यह दृश्य एक स्विमिंग पूल का है और स्विमिंग पूल के अन्दर अनेक प्रकार के स्लाइड्स एवं --

ब्रिज के ठीक साइड मे एक टावर भी बनाया गया --

के किनारे लाइट लगायी गयी है।

यह दृश्य किसी फ़ास्ट फ़ूड की दुकान का है और यहाँ एक व्यक्ति --

कम्प्लेक्स के अंदर अनेक व्यक्ति आये हुए हैं।

होटल का है जहाँ होटल के अंदर अनेक चेयर व टेबल लगायी हुई हैं और होटल को --